बड़े-छोटे और यहाँ पे रखे हुऐं हैं और यहाँ पे मछली का ।

और उसके पीछे बापू जी हमारे महा --

हॉस्पिटल यहाँ पे चौबीस घण्टे इमरजेंसी --